आगे देख रहा हूं मैं यह एक दुकान हैं| दुकान पे ज्यादा-ज्यादा माल हैं। वहां--

आगे देख रहा हूँ मै --

सामने देख रहा हूँ मैं एक परा रास्ता है। रास्ते के पास एक अच्छी सा बिल्डिंग है।

आगे देख रहा हूँ मैं एक अच्छी सा मैदान है। मैदान में बहोत सा आदमी वहाँ --